और सामने में अअ गाड़ी पार्किंग की भी जगह है।

ये कहीं का किला है।

इसका मतलब गाड़ी पार्किंग की भी सुविधा है।

और फोटोग्राफर फोटो ले रहे हैं।

ये साहिबगंज के पार्क का फोटो है।

और पहाड़ दिख रहा है|

कोई साइकिल लेकर खड़ा है।

ये कोई मैरिज हॉल लग रहा है।

सारे बच्चे अअ अअअ एक अच्छे से लाइन में साफ सुथरे कपड़े पहन के खड़े हैं दो टीच--